यहा पे शादी एक डेकोरेशन हुआ है। डेकोरेशन के सामने के गेट की फोटो है। यह यहा पे हरे कलर की पर्दे लगे हुए है। हरी कलर की यहा पे हमे बिछाने डाली हुई है। यहा पे--

यहा कुछ पेड दिखाई दे रहा है। निले कलर कि नाव है। और काफी अच्छा माहोल यहाँ पे दिखाई दे रहा है।